और पीछे की तरफ कुछ पहाड़ भी दिख रहे हैं और इसके अगल बगल में कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं।

यह एक बहुत अच्छा पौधों का बगीचा है जिसके अंदर हमें खंबे देखने को मिल रहे हैं।

बैंड के लेफ्ट साइड एक जनरेटर भी खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ए_टी_एम लिखा हुआ है।

और इस पर मां शगुम्बरी बिसविद्यालय सारनपुर लिखा हुआ है।

और मदरसे के पीछे कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

और इसमें कुछ स्कूल की गाड़ी भी दिख रही है कुछ छोटी व कुछ बड़ी।

एक लड़के ने इनमें से हेलमेट भी पहना है और साइड में कुछ बारकोड के फोटो भी लगे है।